यहां पर एक अलमारी बनी हुई है और उस अलमारी में तीन रैक बनी हुई है।

खेत में मिठाई रखी हुई है जिसमें सत्तू बर्फी लड्डू हैं और नीचे जो में भुजिया चन्ने और रखी हुई है।

खाट डाली हुई है सफेद कलर और लाल कलर की तकिया लगी हुई है यहां पर कुछ कुर्सियां रखी हुई है और एक टेबिल लगाई हुई है।

यहां पर एक दुकान बनी हुई है और इसमें कांच की अलमारियां लगी हुई है और --

और पीछे की ओर कुछ मकान बने हुए हैं एक पीले कलर की दीवार बनी हुई है और यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है।

और उसके पास में एक खंभा लगा हुआ है और उनके पीछे से रोड जा रही है जिस पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी और एक मोटरसाइकिल जा रही है।

पीछे की ओर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

और नीचे की ओर छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं यहां पर तीन बाइक पार्क की हुई है एक व्यक्ति खड़ा--

कुछ जूते रखे हुए हैं और कांच का गेट है उसमें भी जूते रखे हुए हैं यहां आगे टेबल लगाके उसपे कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

और यहां पर बाहर दीवार पर कुछ नमकीन के पैकेट टंगाए हुए हैं और --

और यहां पर एक बाइक खड़ी है और एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले कलर की टी शर्ट और जींस पहन रखी है।